जहां यह प्रतीत होता है कि यह न्यू न्यू बस है इसकी ये गवर्नमेंट व्हीकल है।

यह तस्वीर आपको सुंदर सी कलाकृति की तस्वीर दर्शाई गई है जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं।

बैठकर चलते दिख रहें हैं वहीं पानी के अंदर।